यह गुड्डे और बुक का दुकान है इसमे अनेकों प्रकार के गुड्डे रखा हुआ है।

यह पर्दा की दुकान है ये --